तकिया दिखाई दे रहा हैं।

प्लेट के नीचे एक टेबल नजर आ रहा है।

इस पिक्चर में हमें हरी पेड़ नजर आ रही हैं।

जो की मछली बेचता हुआ दिखाई दे रहा हैं ।

मछली का डब्बे नजर आ रहा हैं।